तीन रंग का झंडा है एक लाल रंग का झंडा है।

जिसमे एक लड़का भी है।

इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे।

यह फोटो किसी डैम का दिख रहा है जिसमें एक बहुत अच्छी पुल बनाई हुई है।

यह फोटो किसी पार्टी फसस्न का दिख रहा है।

और कोई एक लोग गिट्टी को लेकर ऊपर जा रहे हैं।

इसमें बहुत सारी पंखे लगी हुई हैं ।

पिल्लरें बहुत सारी है।

नीचे कारपेट बिछाया हुआ है ।

इसकी दीवार बहुत ही खूबसूरत दिख रही है।

यह तस्वीर एक पार्क का दिख रहा है जिसमें दो लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे लाइट भी एक दिख रही है।

इसकी रोड बहुत ही क्लीन दिख रही है।

यह फोटो किसी लाइब्रेरी का दिख रहा है।

जहाँ पर बहुत सारी दुकानें दिख रही है।

एक पुल दिख रही है ऊपर बैनर चिपकाने वाला --

खड़े हैं एक पानी लाने जा रहे हैं।

पेट्रोल पम्प मे जो दो पिलर है बहुत अच्छे हैं।

तीन बाइकें दिख रही हैं बैठे हुए एक बाइक पे दो लोग बैठे हुए।

इसमें एक ऑटो चालक दिख रहा है जो ऑटो --

इसमे एक नारियल का पेड़ दिख रहा है बहुत ही मस्त है।

उसके नीचे बहुत सारी बाइकें रखी हुई हैं।

एख पेड़ दिख रहा है जिसमें फूल --

यह तस्वीर एक गुरुद्वारा का दिख रहा है।

इधर बहुत सारे लोग हैं जो पीला कलर के --

यह तस्वीर किसी रेस्टोरेंट की दिख रही है ।

जो कि दो लोग ऊपर जा रहे हैं एक काउंटर दिख रहा है।

रेस्टोरेंट तो बोहोत ही मस्त दिख रही है।

बहुत सारी कुर्सी लगाई हुई है।

और इसमें बहुत सारी --

कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं इसमें बहोत सारी तारे दिख रही हैं।

एक बार एक व्यक्ति टायर खोल रहा है ।

इस सर्विस सेंटर में कुछ मशीनें दिख रही है।

किसी पूजा होते हुए दिख रही है।

यह तस्वीर किसी पुराने पार्क की दिख रही है।

सारी ईटे दिख रही है कहीं-कहीं--

एक लेडीज भी दिख रही है जो कि हरी-हरी --

कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो कि नए-नए है।

जिसमें एक लैपटॉप रखी हुई है।

यह तस्वीर किसी पार्क की दिख रही है।

अंदर आइसक्रीम की दुकानें लग रही ।

एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहे हुए हैं।

इसकी दीवाल बोहोत ही मस्त है।

इसमें पंखे भी हैं जो चल रहे एक चेयर है।

एक व्यक्ति गं गंजी पहने हुए हैं।

बैलून से भी फुलाया गया है बैलून भी सजाया गया है।

यह फोटो किसी जिम का दिख रहा है जिसमें रनिंग के लिए कुछ समानें रखी गई है।

इसका कलर ब्लू हरा लग रहा है।

यहां पे चेयर रखी हुई है।

ये फोटो किसी पेट्रोल पंप की लग रही है जिसमें चार गाड़ियां हैं।

और इस का रोड भी बहुत क्लीन दिख रहा है।

यह फोटो रेस्टोरेंट के तरह लग रहा है।

और एक छाछी की तरह लग रही है।

यह फोटो एक चर्च की लग रही है जिसमें --

दो लेडीज फोटो खिंचवा रहे हैं चार लड़के बगल में खड़े हैं चार लोग --

जिसमें सोफे हैं।

बेंच दिख रहे हैं एक बच्चा उधर से आ रहा है इसमें लाइट बहुत ही बेहतरीन लगी हुई है।

यह फोटो में काउंट किसी प्राइवेट कंपनी की लग रही है जिसमें एक काउंटर बनाया गया है उसके अंदर एक कुर्सी है।

पार्किंग की है जिसमें एक कार है।

य काल --

इसरिंग हो रही है इसमें लाइट लगी हुई है कुछ --

यह फोटो किसी कॉफी शॉप का दिख रहा है।

दिल बनाकर टांगी गई है।

दो टेबल दिख रही है चार कुर्सियां दिख रही है।

यह फोटो किसी कोचिंग का दिख रहा है।

और इस कोचिंग की दीवारें वाइट दिख रही है।

एक सीढ़ी दिख रही है ऊपर चहरने वाली--

करने के लिए तीन झुगिया हैं।

फोटो फ्रेम भी दिख रही है जिसमें बहुत सारे घोड़े --

और इनके काउंटर पे एक साइकिल दिख रही है।

जिसमें बहुत सारी खिलौने रखी हुई है।

तीन लोगों ह तीन लोग हैं।

और तीन पर्दे दिख रही है।